के ऊपर दो तीन लोग चल रहें हैं दूर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं।

काले रंग का भी है सफ़ेद रंग का भी है पीछे एक बहुत बड़ा बंगलो जैसा दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिख रहा है। आसमान बिल्कुल साफ है। नदी का रंग हरा दिख रहा है। सुबह का वक्त है।

और दूर कुछ पेड़ दिख रहे हैं और सामने भी कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

घर का रंग सफ़ेद भी है ग्रीन कलर का भी हैं कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे --